एक जैनी बैठा हुआ है जैनी भगवान जिसने ए मुकुट पहना हुआ है।

--स्कूल है स्कूल के बाहर मैदान है जो घास से हरा है और उसके स्कूल के--

और भगवान राधे कृष्ण और गणेश की फोटो रखी हुई है और कुछ गुलदस्ते में फूल रखे हुए --

हरा घास जमा हुआ है और कुछ लोग झूले में बैठे हैं अगल बगल पेड़ पौधे है।

अगल -बगल पेड़ -पौधे हरे -भरे है और कुछ पशु भी है।

रूम है रूम के अंदर लाइट लगी हुई है और दीवारों में चित्र बना हुआ है पंखा रखा हुआ है और चेयर है और टेबल है।

ये हरे - भरे पेड़ - पौधे है और मैदान है घास जमा है।